इन्हें गोल-गोल चक्कों में पैर रखे हुए हैं।

इसमें फोन नंबर भी लिखे हैं।

पैंट लाल है एक आदमी आ रहा है उसकी शर्ट सफेद है।